लोग जिस प्रकार बोलते हैं उस प्रकार यहाँ पर बाल काटे और दाढ़ी बनाए जाते हैं ।

यह एक चाय सुट्टा बार है। यह चाय सुट्टा बार में क्युदल द कुल्हड़ है।

यह एक इस स्टेडियम है। यह इस स्टेडियम में बहुत से लोग आते है। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए आते है। और बड़े लोग यहाँ पर बैठने के लिए और बूढ़े लोग व्यायाम करने के लिए आते है।

यह एक घर है। यह घर के लोग छठ पूजा मनाने के लिए जा रहें हैं। छठ पूजा बहुत ही धार्मिक पूजा है। यह पूजा में बहुत से लोग श्रद्धा में मिट मछ्ली कुछ नही खाते हैं महीने तक।